इसमें एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इसके बहार कुछ मोटरसाइकिलें भी--

तथा अंदर की तरफ स्कूटियां भी खड़ी हुई दिखाई--